और जो कि हरे हरे दिख रहे हैं और स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर आ रही है और राउंड में लाइट दिख रही है।